इस चित्र में हमें एक शॉप दिख रही है।

रूम लग रहा है यहां पर एक बेड और--

एक आईना लगा हुआ है और एक मशीन भी लगी हुई--

इस चित्र मे हमें एक गाय का गोठा लग रहा है।

यह एक स्टेशन टाइप दिख रहा हैं।